सामने मुझे एक दीवार दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और मुझे दो कुर्सियां रखी दिखाई दे रही है।

बैनर पर मुझे फ्री रुरल हेल्थ कैंप दिख रहा है।

सामने मुझे कुछ सोफे और एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान मुझे ज्वेलर्स शॉप --

दुकान पर मुझे एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा हैं।

मुझे इस फोटो पर कुछ दुकान दिखाई--

मुझे बोड शाहिल मोबाइल गैलरी लिखा हुआ दिखाई--

और मुझे कुछ हरे ड्रम रखे दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर मुझे श्री ओम श्री सोमनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है।

बेड पर मुझे कुछ चादर और कंबल रखे दिख रहे हैं।

यह दुकान मुझे साड़ियों की नजर आ रही है।

बैंक मुझे सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं।

और मुझे एक दुकान नज़र आ रही है।

दुकान पर मुझे काफी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।